यह तस्वीर किसी अस्पताल की मालूम पड़ती है।

यहां ग्रुप में बहोत सारे लड़के और लड़कियां हैं।

यह एक डांस क्लास प्रतीत होता है शिक्षिका महोदय बच्चे और बच्चियों को डांस की मूव सिखाती नजर आ रही हैं सामने एक आईना है।

बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा है।

बास की सीढ़ी लगा के घर को पेंट कर रहे हैं।

दीवाल पे मानव शरीर के पाचन तंत्र को की तस्वीर को लगाया गया है।

यहां दो लोग पहाड़ों के बीच--

यह बहोत सारे छात्र बैठे हुए हैं।

पिक्चर में एक पुरुष पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं।

पीछे एक स्कूल को दिखाया गया है जो गवर्नमेंट स्कूल है।

यहां किसी जिम को दिखाया गया है जिम करने की सभी वस्तुएं यहां रखी पड़ी है।